एक औरत दुकान में दिखाई दे रहा है जो कि बैग को टांगे हुए हैं और अम एक कार दिखाई दे रही है और बहोत सारे आ औरतें आते-जाते --

इस इमेज में मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है उसपे लिखा हुआ है जी.एस.टी.ई.एन. जय माता दी विजय पुस्तक भंडार हमारे यहाँ --

और अंदर एक पंडाल सा बना हुआ है उसमें बहोत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ आदमी बाहर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक घर का काम लगा हुआ दिखाई दे रहा है लगी हुई है उसपे एक आदमी चढ़ा हुआ है मशीने लगी हुई है।

एक वाइट कलर की शर्ट और पेंट पहने हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है दो तीन दो तीन आदमी यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ईंटे दिखाई दे रही हैं तीन कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चा सरक रहा है ऊपर दो तीन तीनों लड़कियां बैठी हुई है और बाजू में एक लड़का ऊपर चढ़ रहा है उस लड़के और एक आदमी खड़ा हुआ है एक औरत जा रही है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और पेड़ दिखाए दे रहे हैं।